ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बहोत बड़ा कमरा है जिसमें की एक ए_सी लगा हुआ है ए_सी बहोत अच्छा--

ये जो सामने आप देख रहे हैं आर--

घर में नई और एक कॉलेज में और स्कूल में मनाया जा रहा है।

बिजनेस प्लान है ये प्रॉपर्टी का प्लान है।

ये बहोत अच्छा एक बड़ा दुकान है यहां पर हम बिजनेस प्लान कर सकते हैं।

हॉस्पिटल का एक बिजनेस प्लान है।

ये जो आप सामने देख सकते हैं आपको इस तस्वीर में--

कुछ लोग एक जानवर की मदद कर रहे हैं।

जो फोटो खी खिंचाने में बहोत अच्छा व्यवस्थ कर रहे--

यह जो आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं--

यह जो आप सामने तस्वीर देख रहे होंगे।

ये जिम का एक बहोत बड़ा खिलाड़ी है ये जिम का बहोत अच्छा संकट में है ये जिम में बहोत अच्छा काम करता है ये जिम मैन है ये जिमर है ये जिमर है।

ये सहमाने आप एक तस्वीर देख रहे होंगे--

ये क्या तस्वीर है ये बहुत शानदार सुंदर तस्वीर है।

इस तस्वीर में शादी का माहौल बना हुआ है।

ये मशीन जो है बजरी को कूटने का काम करती है ये बहुत अच्छे काम लाइक मानी जाती है।

सामने आपको एक दिखाई दे रही होगी।

सामने आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा--